इस इमेज में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके बाहर एक गेट लगा हुआ है और बाजू में शटर लगी हुई है उसमें पॉपुलर कुछ लिखा हुआ है जो की साफ दिखाई नहीं दे रहा है बिल्डिंग के आजू-बाजू दो शटरे है एक खुली हुई है एक बंद है।

इस इमेज में मुझे एक मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें कांच के अंदर दस प्रकार की मिठाई रखी हुई हैंइटली डिश दिखाई दे रही हैंजो मास्क लगाया हुआ हैं पंखा दिखाई दे रहा है लाइट्स दिखाई दे रहा हैं।

कुंआ- सा बना हुआ है पेड़ दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है हरी घास दिखाई दे रही हैं।

और उम हरे-हरे घासें दिखाई दे रही है।